खड़ी हैं लाल रंग की सफेद रंग की।

और त शीशे के दरवाजे से--

फैक्टरी सी नजर आ रही हैं।